ये एक बैंक है जिसका नाम है और सामने गोट है।

जो चारो तरफ से बाउंड्री लेकर स्थापित किया गया है जो टाइल्स लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का है आगे में लाल झंडे फहर रहे है हाथ में तलवार लिए हुए है।

जो टेबल कुर्सी लगा के बैठे हैं यहाँ पर सब बाहर से लोग आते हैं पिकनिक मनाने।

यहाँ सब्जी बाजार है यहाँ पे काफी तरह के सब्जियां बिक रहे है जैसे बैगन आलू टमाटर आलू तो बोरे-बोरे गिरे हुए है।

और ये पार्क बना हुआ है जो काफी हरा भरा है बादल भी दिखाई दे रहे है रोड पे लाइनिंग किया हुआ है जो रेड कलर --